यहाँ पर हमें कुछ गाड़ियां नजर आ रही हैं एक स्प्लेंडर भी नजर आ रही है जो कि एक सफेद कलर की शीट टी शर्ट पहना आदमी चला रहा है।

बच्चों का ड्रेस लाल कलर का है वहाँ एक टीचर भी खड़ी हुई है जिसने हरे रंग की साड़ी पहनी है।

फव्वारे मे पीले रंग की लाइट जल रही है और फव्वारे से पानी निकल रहा है।

गाड़ी के पास एक आदमी खड़े होकर गाड़ी की रिपेयरिंग कर रहा है गैराज का रंग सफेद और सुरमही कलर का है--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

और घर के बाहर रेलिंगें लगी हुई हैं ये चित्र दिन का है।

इस चित्र में हमें कुछ मजदूर दिखाई दे रहे हैं जो कि--

इस चित्र में हमें एक बैंक नजर आ रहा है बैंक का नाम एक्सिस बैंक है उसके ऊपर एस_बी_आई बैंक का बोर्ड लगा हुआ है बैंक की बिल्डिंग में--

कांच लगा हुआ है बैंक के बाहर बहोत सारे लोग इकट्ठा नजर आ रहे हैं।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

यह चित्र समुंदर किनारे का है जहाँ पर एक--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

यह चित्र एक पार्क का है जहाँ पर हरे रंग की घास नजर आ रही है पार्क के आसपास कुछ पेड़ लगे हुए हैं जो हरे रंग के हैं।

ये चित्र एक बैंक का है बैंक के नीचे एक दुकान है जहाँ पर कृष्णा साड़ी का--

गुरुद्वारे में सुनहरी रंग का काम हुआ हुआ है यहाँ पर सुनहरी मेहराब बने हुए हैं और ऊपर सुनहरी जाली बनी हुई है।

यह चित्र एक शादी का है जहाँ पर सामने टेबल पर कुछ डिशें दिख रही हैं और कुर्सियां रखी हैं कुर्सी पर--

उसकी दुकान में काफी समान नजर आ रहा हैं पीछे एक फ्रिज है जिसमें जूस की बोतलें रखी हुई हैं साइड में एक लाल कलर की ट-ट्रे रखी हुई है।

ये चित्र एक होटल का है जहाँ तीन लड़के बैठकर खाना खा रहे हैं।

ये चित्र एक रोड का है जहाँ पर सामने हमें एक बिल्डिंग नजर आ रही है बिल्डिंग के बाहर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

ये चित्र एक योगा क्लास का है योगा क्लास में नीचे मैट बिछी हुई है जो कि हरे गुलाबी नीले रंग की है।

ये चित्र एक आइसक्रीम पार्लर का है जो कि पूरा सफेद रंग का है यहाँ पर कुछ गुलाबी कलर के डब्बे नजर आ रहे हैं।

एक काले रंग की कार और एक सफ़ेद रंग की कार दिख रही है यहाँ पर एक रिक्शा भी है और कुछ लोग गाड़ी पर बैठकर जा रहे हैं।

इस चित्र में हमें कुछ डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं जिसने हरे रंग के कपड़े पहने हुए हैं।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

ट्रक नीला और सफेद रंग का है ट्रक के पास एक आदमी बैठा हुआ है जिसने काली पेंट --